बहुत सारी भीड़ लग रही है और एक आदमी हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है कुछ लोग टोपी लगाए हैं और कैप लगाए हैं।

सामने एक शॉप दिख रही है जहां पर दीवार एक तरफ की दीवार रही कलर की है एक तरफ की दीवार ब्राउन कलर की है और एक जग के अंदर स्ट्रॉस लगे हुए हैं टिशू पेपर ----

सामने व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है और एक गेट दिख रहा है जो खुला है और उसमें ब्राउन कलर गेट और खिड़कियाँ लगी हैं।